यहाँ से आदमी भी निकलते होगे यही पर डोर चरने आते होंगे जीव जंतु भी आते होगे किसी भी--

यहाँ पर तो अंधेरा -सा दिखाई दे रहा है आकाश में चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है जो बहोत तेजी से चमक रहा है।